ये एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है सिताम्बडी शाखा है यहा पर एक बैंक है पास मे ए.टी.एम भी है और यहा पर एक बैंक भी है शाखा भी है और ए.टी.एम भी है और यहा पर कुछ बाइकस खड़ी हुई है गमले रखे हुए है शटर बंद है कुछ चिंजों के--

यहाँ पर भी एक रस्ता हैं रस्ता हैं। रस्ते के आसपास कोने पे बहुत सारा कचरा लगा हुआ हैं। पॉलीथिन पड़ा हुआ हैं कुछ पन्निया पड़ी हुई हैं यहाँ रस्ते पर से कुछ बाइक रिक्शे रहैं हैं।

और यहाँ आस में ही कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं पास में बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं बिल्डिंग हैं बिल्डिंग हैं और आसपास पेड़ पौधे हैं और बादल दिख रहा हैं आसमान दिख रहा हैं।

और यहाँ पर कोई फसलं बोई हुई है खेतों में शाम का टाइम हैं सूरज ढल रहा हैं जो काफी अच्छा लग रहा हैं यहाँ पर और यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा हैं यहाँ आस-पास काफी पेड़पौधे --

फंक्शन किया जा सकता है पार्टी की जा सकती है और यहाँ पर काफी अच्छा गार्डन है और यहाँ पेड़ पौधे है लाइट जल रही है और एक कार है और व्यक्ति खड़े हुए है यहाँ पे काफी अच्छा लाइट है।

और यहा पर नाव भी है और यहा पर आसपास बहुत सारे पहाड़ पेड़ पौधे है और पहाड़ भी है और यहा पर काफी अच्छा और शाम का टाइम है यहा पर नाव रखी हुई है उसपे रेड कलर की कुर्सियां है।